इस चित्र में दिखाई दे रहा एचडीएफसी बैंक है और यहाँ पे लोग पैसे निकलाने --

और यहाँ पे एक लड़का भी अपनी जिम बना जिम बन जिम बना रहा है और यहाँ पे काफी लोगो की भीड भी दिख रही है।